यहाँ पे हर एक प्रकार के फैंसी कपड़े मिलते हैं जैसे की जैक टीशर्ट इसी प्रकार के बहुत सारे फैंसी कपड़े मिलते हैं साथ ही बगल में एक कैफ़े भी --

यह एक स्टेचू है इस स्टेचू में दो घोड़े दिख रहे हैं और एक रथ है और उसके ऊपर में एक --

यह एक बुक की दूकान है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काउंटर बना के सारे बुक को सजा के रखे हैं। यहाँ बहुत सारे बुक हैं। मोटे बुक हैं। पतले बुक हैं। और बहुत कुछ ऐसे ही ऐसे बुक हैं।

ठेला है और यहाँ पे पाव-भाजी बेचते हैं।

और यहाँ पे एक खेलने की जगह भी है जो बहुत ही अच्छी है और सामने एक खेलने की लगाई हुई है सामान।

बनाने का काम यहीं से होता है।

यह एक भारतीय स्टेट बैंक है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना काम करने आते हैं जैसे की खाता खोलना।